पेड़ में कुछ कुर्सियां भी लगी हुई--

यहां पे एक आदमी एडवर्टाइजमेंट में हाथ में घड़ी पहन रखा है घड़ी स्मार्ट वॉच है।

यह पेड़ काले रंग के बैग में रखे हुए हैं।

यह एक कैफे की फोटो --

चटाइयों के साथ यहां कंबल भी--

यह एक स्कूल के आगे का एरिया है।